यहां कुछ टोकरी रखी हुई हैं जो लाल नीले रंग की हैं।

इधर एक आदमी फोटो खींच रहा है उसके पीछे एक आदमी देख रहा है।

इधर सेल्स रूम लिखा हुआ है रिलायंस लिखा हुआ है।

एक नीली टी-शर्ट में एक आदमी खड़ा हुआ है मछली ठेले पर बे है।

अलग अलग प्रकार की आकृतियां दिखाई दे रही है।

लाल हरे गुलाबी रंग के पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

भोले नाथ की पिंडी की मो फोटो दिखाई दे रही है।

आकर्षक लहंगा सफेद रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी सफेद रंग की लाइटे चमकती हुई दिख रही हैं।

लाल रंग से आयात की आकृति दिख रही है।

जाली लगी हुई है इसमें हरे रंग के पान रखे हुए हैं।

इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है।

इस कमरे में बहुत सारे लाल सफेद कलर के गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारी सफेद कलर की कुछ चीजें दिखाई दे रही है।